गार्डन को बहुत ही आकर्षित तरे-से से सजाया हुआ दिख रहा है उपर बादल छाए हुए है धन्यवाद।

एक गार्डन एक कुदरत का नजारा पेस करते हुए दिख रहा है यह चारो तरफ रंगी बे रंगी फूलो के पेड़ लगे हुए है।